दरवाज़ा खुला हुआ है। ये जिस डिपार्टमेंट का है उसका नाम लिखा हुआ है लेकिन वो क्लियर दिखाई नहीं दे रहा।

यह एक प्लेटफार्म का ही पिच्चर दिखाई दे रहा है जिसमे एक ट्रेन खड़ी हुई दिख रही है और ये प्रतीत ऐसी हो रही है जैसे की --

यहाँं पर भी अस्पताल का उल्लेख किया गया है। ये जनता अस्पताल है।

और स्टंप के साथ भी उसकी बॉर्डर बनाई गई है कि इस बॉर्डर के अन्दर रह कर के क्रिकेट अ क्रिक्केटर को बैटिंग करनी रहती है।